ये एक जगह का चित्र है जिसमे एक अलमारी दिख रही है उसमे कुछ सामान रखा हुआ है एक फ्रिज दिख रही है।

जमीन पर कुछ हरे रंग की पत्तियाँ लगी हुई है कुछ खंबे दिख रहे हैं।